ये किताब अच्छी है किताब लेने आ रहा है किताब किताबों की दुकान कर रहा है दुकान बहुत अच्छी है।

कैफे के आगे बाइक खड़ी हुई है एक अह--

होटल बहुत अच्छा है यह पे आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक दुकान है इस पे स्कूल स्टॉपिंग शॉप लिखा हुआ है यह दुकान--

यह सड़क है सड़क पे बारिश हो रही है।

वातावरण बहुत अच्छा है बहुत सफाई है।

ये कार का गारेज बाइक गैरेज है यहा पे कार खड़ी हुई है यहा पे आदमी भी हैं।

एक मिली चाय इसमें दो बनी चाय देखने पे बहोत अच्छा लग रहा है।

हर तरह के जूते दिखाई दे रहे हैं यहां पे इस इस अह एल_सी_डी है।

यहां पे एक बेड है ये इसमें कि वो है मेडिकल है यहां पे वो --

यह आदमी गाड़ी ठीक कर रहा है बाइक ठीक कर रहा है इसके आसपास भी अं दुकानें हैं।

आज भी दिखे इसके पास भी बिल्डिंग बनी हुई है यहां पे एक ठेला लगा हुआ इसके पास एक शटर है।

यहां पर घड़ा भी लगा हुआ है।

धरती में छेद कर रहा है देख रहा है इसके पास हथौड़ा भी है लाइट की काम कर रही लाइट का काम कर रहा है।

देख अ देखा जा रहा है की यह क्या कर रहा है इसके पास--

बहुत बहुत बहुत बढ़िया लग रहा हैं ये बहुत अच्छा हैं।